ये स्कूल है जो कि स्कूल में बोहोत बच्चे पढ़ रहा --

और यहां छोटा-छोटा दुकान है जो कि इसमें खाने का सामान मिलता है। बोहोत भीड़ भी है।

एक बहुत बड़ा स्कूल है जो की स्कूल में बहुत सुविधा है सब चीज का कंप्यूटर है और बहुत चीज है जो की स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होता है।